और कंच के गिलास भी रखे हैं।

और इसके पास घास भी खड़ा हुआ है।

और बहुत सारे सोफे भी पड़े हुए हैं एक टेबल भी रखा हुआ है।

और दो कार भी है और दो पिलर भी खड़े है।

और कुछ लोहे का गेट भी लगा हुआ है और एक मोटरसाइकिल भी है।

यह एक कॉस्मेटिक की दुकान है और उसमें लकड़ी के डब्बे भी बने हुए है।

मेज पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है और एक एल_सी_डी भी है।

यह एक फलों की ठेली है।

कैम्पर भी रखे हुए हैं रेड कलर के बहुत सारी पन्नी भी है।

कुछ कुर्सी भी बनी हुई है लकड़ी की।

और बहुत सारे कट्टे रखे हुए हैं।

यह एक तेल पम्पा है बहुत बड़ा और बहुत सारी मशीन भी रखी है बहुत बड़ी बड़ी।